सामने आपको बहुत ही खूबसूरत सा शिव जी का मंदिर दिख रहा हैं चढ़ने के लिए सीढ़ीयां है।

हम्म रखी हुई है बहोत सी जग रखे हुए है ।